शिक्षक होते हैं जो की बच्चे को मार्शल आर्ट सिखाते है अच्छे तरीके से।

यहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है लोग यहां पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पढ़वाते है।